दिखाई दे रहे हैं और लोग तो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं लाइटे दिखाई दे रही हो कुछ मूर्तियां बनी दिखाई दे रही है।

इस चित्र मे हमे दिखाई दे रहा है कि ये एक गड्ढा है जिसमें बहोत सारा पानी भरा हुआ--

और रात का समय है और यहां पे जो है रोड बना हुआ है और कुछ मिट्टी पड़ी हुई है।

और यहां पे बहोत सारी जो है चीजें गिटार की और यह सब की चीजें रखी हुई हैं।